यहां पर पानी भी दिखाई दे रहा है पानी का कलर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर एक पक्षी भी दिखाई दे रहा है।